जैसे कि मैं यहां देख रही हूं यह एक जीम सेंटर है और यह जीम सेंटर में सभ--

सभी कोई अपने वर्कआउट करने आए है अपने बॉडी फिट करने के लिए आए है और सामने में जो ये एक लड़का --

अ पूरी सूखी जमीन है पास में भी जंगल है पेड़ पौधे हैं।

जैसे की मैं यहां देख रही हूं ये एक मंदिर है यहां पूजा की स्थापित बनी हुई है।

सारे पूजे की सामग्री रखी हुई है दीप जल रही है फूल से डेकोरेशन है टाइल्स में और बाल्टी भी रखी है ।

ये बहुत पुराना लग रहा है बहुत थोड़ा धूल बैठे हुए है गंदगी है और यह दरवाज़े में जो लकड़ी की डिज़ाइन है ये बहुत पुरानी डिज़ाइन --

और यहां पर छोटे छोटे मंदिर है सभी फल फूल--

जैसे की मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ एक पार्टी की ऑर्गनाइजेसन हुई है।

जैसे की मैं यहां देख रही हूँ यह एक जिम सेंटर है और जिम सेंटर में सभी वर्कआउट करने के लिए आए है ।

एक लड़का टी शर्ट और बॉक्सर पहना हुआ हैं।

जैसा की मैं देख रही हूँ ये एक नदी है और नदी की पानी पूरी गहरी कंचन नज़र आ रही है आसमान पूरा सफ़ेद है बादलों से भरा हुआ है पहाड़ --

जो वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है वह व्यक्ति एक पुरुष है और वो व्यक्ति ग्रे टीशर्ट और वाइट पेंट पहन के बैठा हुआ है ।

इस बिल्डिंग के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है वाइट कलर का और यह चर्च की छत रे--

पीछे की तरफ एक पेड़ दिख रही है पेड़ हरे रंग का है पूरा पत्तियाँ लगी हुई है ।

पीछे में मेन गेट है और नीचे में पार्किंग किया हुआ है एक बाइक दो बाइक है ।

सारेक सारे यहां पर लोग आये हुए है नए नए वस्त्र पहन के दो बाइक पार्क की हुई है बाहर की तरफ़ --

यहाँ बिलडिंग के अंदर बहुत सारे फैन नज़र आ रहे हैं करीब --

जैसे की मैं यहा देख पा रही हूँ य य यह एक चूड़ी की दुकान है जो महिलाएं लोग पहनते है हाथों में चूड़ी --

बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए हुए है और यहाँ एक नहीं बहुत ढेर सारी चूड़ियाँ है चूड़ियाँ की बॉक्सेस में रखी हुई है मेटल की चूड़ियाँ काँच की चूड़ियाँ है और बहुत प्रकार की --

नीचे की तरफ छोटी सी बहोत खूबसूरत सी मंदिर रखी गई हैं जहां भगवान की स्थापना की गई है।

एक रास्ते के तरफ़ दीवार है और वहां पर सभी लड़के बच्चे लोग सभी स्थान कर रहे हैं।

जैसा की मैं देख रही हूँ ये एक कपड़ा का दुकान है और सामने में एक बच्चे का डमी खड़ा है ।

एक ग्रिल गेट के पीछे रखा हुआ है और एक ग्रिल गेट में रेड येलो का फ्लावर डिज़ाइन किया गया है ।

जैसा कि मैं देख रही हूं दोपहेर का वक्त है धूप है करा धूप है यहां पर और ये एक --

हेंगर में बहुत सारे कुर्ती सूट ब्लाउज अन्य प्रकार के घड़ी है रखी हुई है एक डेमो है डेमो में लहँगा और ब्लाउज पहनाया हुआ है --